इस गार्डन को बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है इसके बाहर एक मोर की प्रतिमा बनाई गई है जो दिख दिखने मे बहुत सुंदर दिखाई दे रही है अंदर लोग खाना खा रहे है।

यह एक पार्क है जिसमें नेता जैसा स्वामी विवेकानंद जी की समरक बनाई गई हैं।

इसमें ए-- स्वामी विवेकानंद जी की बहुत अच्छी पर्त्रिमा का नवर्न किया गया है इन मूर्ति के आस-पास बहुत पेड़ पोधे लगाये गए है तथा वृक्ष भी है।